बैठी हुई दिख रही है।

यहां बाय मोर गेट मोर --

काफी सारी और भी गाड़ियां दिख रही है।

कुर्सियां लगी दिख रही हैं जो सफेद नीले रंग की हैं।

यहां हम देख सकते हैं कि--

जहां कसरत करने की काफी मशीनें पड़ी हुई है यहां हरे रंग का मैट बिछा हुआ है।

और भी बहुत सामान यहां नज़र आ रहा है।

यहां हम देख सकते हैं की यह एक--

काफी सारे लड़के जिम करते हुए दिख रहे हैं।

मशीनें रखी हुई दिख रही हैं।

यहां पर हमे जिम दिख रही है।

और शॉप नंबर भी लिखा हुआ है।

मानसरोवर स्टेशनरी की दुकान दिख रही है।

और यहां पर अंदर कॉपियां पेन रखे हुए दिख रहे हैं।

यहां पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

यहां हम देख सकते हैं कि कुछ हिरण खड़े हुए हैं और--

यहां जंगल जैसा दिख रहा हैं।

यहां हम देख सकते हैं कि एक स्टील की प्लेट में काफी सारी जलेबियां रखी हुई है।

कमरा दिख रहा है और यहां बाहर छोटे छोटे गमले में पौधे लगाए हुए हैं।